दूसरा आदमी इंक्वायरी के लिए खड़ा है।

बरसात के मौसम में मोर नाचती है।

औरतें अपने बालों में फूल लगाये हुए है।

पार्क में बच्चे खेलने आते हैं।

जो बाइक से जा रहे हैं।

यह एक होटल का सीन हैं यहां पे बहोत सारे लोग खाना खाने आएं हैं।